यह बहौत सारे क्रिकेट के बैट हैं।

एक बाइक निकल कर जा रही है एक होडिंग लगी है पीछे टावर पे बड़ी गाड़ी भी लगी हुई है पेड भी अच्छे ना --

यह एक घर है जिसमें बहुत सारी बड़ी सी विंडो लग रही हैं।

यह बहौत बडे-बडे पहाडो के बिच की सूंदर सी फोटो है।

जोकि हेलमेट है बहुत सारी लाइन में खड़ी है मैडम है इनने सफ़ेद कलर के कपडे पहने हैं।

पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर नीला आसमान है साइड में एक तभू देख रहा है।

बहौत सारे गोल्डर साइड में पड़े हुए हैं।

यहाँ एक रोड दिखाई दे रहा है रोड पे कुत्ता भी दिखाई दे रहा है जो कि काला है।

यह एक इ-रिक्शा का फोटो है जिसमें --

बस के पीछे खम्बा है जिसकी बड़ी सी वायर गयी हुई है पीछे भी बहुत सारे घर भी बने हुए --

मौसम है बादल दिख रहे हैं साइड में गाड़ियां खड़ी हैं।